यहाँ पे आप देख सकते है ये बहुत बड़ा आपको स्कूल टाइप का कुछ दिख रहा है आप देख सकते है दोनों साइड यहाँ पे कितना सही से आपको दिख रहा है मुझे यहाँ पर घास वैगरा मुझे यहाँ पर सब कुछ देख पा रहे हो लेफ्ट साइड में आप देख पा रहे होंगे ये बहुत बड़ा बिल्डिंग मुझे दिख रहा है।

यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कितने बड़े एक स्कूल टाइप का मतलब दिख रहा है लिखा हुआ बीजेन्द्र पब्लिक स्कूल यहाँ पे दिख रहा है यह एक पूर्णिया की यहाँ पे स्कूल है ।

ऊपर आप आसमान देख सकते है स्कूल के ऊपर ट्रांसफार्मर पर लगा हुआ है नीचे अपना रोड देख सकते हैजो की कॉलेज के लिए लग रही है।

आप यहाँ पे देख सकते हैं रेनॉल्ट पूर्णिया की शोरूम है यहाँ पे मिलती है | आप यहाँ पे बगल में सर्विस भी दी जाती है देख सकते हो दोनों साइड में कितनी लाइटें लगी हुई है ।

आप देख सकते है यह एक मार्केट का सीन है जहाँ पे सब्जी वगेरह मिली मिलती है सामने दो बाईक लगी हुयी है।

यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यहाँ सामने एक बिल्डिंग मुझे दिख रही है| नीचे आप उसके देख सकते है यहाँ पे बोहोत सारे हरे-हरे घांस है | यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे पिंक कलर की आपको यह बिल्डिंग भी दिख रही होगी| पीलर टाइप की सामने यहाँ पे गाड़ी वगेरा लगई हुई है।